यह जामताड़ा का बुडूरि का पेट्रोल पम्प है इंडियन ऑइल पेट्रोल पम्प यहाँ बहुत अच्छे पेट्रोल मिलते है काफी सारे लोग यहाँ पेट्रोल भराने के लिए आते है और इस यहाँ का पेट्रोल सब से बेहतर मिलता हैं।

और लोग यहां पे डेली सफ़र करते है आते है जाते है नये लोग पुरने लोग|